इस इमेज में हमें तालाब दिख रहा है दो बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है पानी दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक जो तबेला दिख रहा है तबले में--

इस इमेज में हमें एक क्लास रूम दिख रहा है जहां कुछ बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं।